आसपास जंगल झाड़ वाला इलाका है तथा कई सारे पेड़-पौधे मौजूद है।

यहां का वातावरण भी शांत है।

बगीचे के पीछे एक विशाल पेड़ भी मौजूद है।

आसपास कई अन्य इमारतें भी मौजूद है तथा कुछ पेड़ पौधे भी मौजूद है।

यह एक ग्रोसरी दुकान का दृश्य है।

आस पास कुछ अन्य रिपेयरिंग के सामान रखें हुए हैं।

कुछ पेड़ पौधे भी मौजूद है।

आसपास का वातावरण शांत और सुंदर है।

यह एक केक की दुकान के अंदर का दृश्य है।

अंदर के खिड़कियों की तरफ का डिजाइन काफी माडर्न और सुंदर है।

कमरे के फर्श पर लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ है।

एक व्यक्ति फोन चला रहा है तथा एक खड़ा होकर उसे देख रहा है।

किले की सीढ़ियां भी काफी साफ सुथरी है तथा आसपास कई सारे पेड़ पौधे भी मौजूद हैं।

आसपास का वातावरण भी काफी शांत और सुंदर है।

यह एक पार्क का दृसय है।

पार्क में एक बड़ा सा झूला मौजूद है।

पार्क के आसपास कई सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे भी मौजूद है।

यहां पे सफेद और पीले रंग के बोरे भी मौजूद हैं।

इस तस्वीर में कई सारे लोग एक इमारत के कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं।